बाहर पे बहोत सारे गाड़ियां पार्किंग करके रखे हुए हैं।

सामने में बहुत सारे इंटा भी है।

ऊपर में स्टेट बैंक ए_टी_एम लिख के लिखा हुआ है।

यहां पे पांच चिड़िया नजर आ रही है।

यहां पे तीन टेबल भी नजर आ रही है।

यहां पे बड़े वाली चेयर्स सामने में छोटे वाले चेयर्स भीं है।

यहां पे एक खिड़की है उसे पर्दा से ढक के रखे हुए हैं।

चार गाड़ी के कलर व्हाइट है एक गाड़ी के कलर ग्रे है।

घर का सामने बहोत सारा पेड़ पौधा सब है।

नदी पार करने के लिए एक छोटा सा ब्रिज भी है।

यहां पे बहुत सारे कुर्सियां हैं।

यहां पे बहोत सारे इंसान हैं।

मुझे बहुत बड़ा नदी दिखाई दे रही है।

घर के पीछे बहुत सारे जंगल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत पुराना एक बस दिखाई दे रही है।

रोड के आस पास बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

दीवारों पर ऑफव्हाइट की कलर पेंट किए हुए है।

घर के बाहर मुझे बहुत बड़ा सा गेट दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे बिस्किट भी है।

यहां मुझे एक सीढ़ी स्टेप भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे पत्ते घर है।

यहां बहुत सारा पत्थर है।

यहां बहुत सारा बिस्किट है।

यहां बहुत सारे छोटे छोटे घास है घास के रंग हरा है।

यहां के पर्दे भी एक पिंक कलर के हैं।

मुझे यहां पर एक घर की बालकनी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां दो शैंपू चेयर नजर आ रहे हैं।

रोड पे एक स्कूटी तीन बाइक भी दिखाई दे रही है।

ये एक सफेद कलर के सुंदर सा घर है।

ये घर में बहोत सारे फ्लावर्स है।

यहां पे एक इंसान का हाथ दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम की दीवारों के कलर ब्लू व्हाइट से पेंट किए हुए हैं।